और ब्लू कलर के कर्टेंस है और अंदर ब्लू और वाईट कलर के बलूनस लगे है और एक पाईप भी दिख रहा है जो की पर पड़ा है एक साइड में दो खंभे जिसमे पौधे लगे हुए है।

सामने बहुत बड़ा पार्क है जमीन पर हरे कलर की घास और पोधे लगे है सामने पेड़ लगे हुए है।